पांच लोग दिखाई दे रहे हैं जोकि अपना शायद प्रोजेक्ट बना रहे हैं।

जिस रूम पर बहोत सारी चेयर रखी हुई है।

ऊपर की छत पर बैलून लगे हुए हैं।

एक गमले का कलर या एक ब्लैक है एक वाइट है एक पिंक कलर का है यह और इसकी बाजू से एक पाइप लाइन भी गई हुई है।

इसके पीछे एक बाउंड्री बनी हुई है बाउंड्री के पीछे एक लाइट वाला टावर लगा हुआ है।

कुछ थैली रखे हुए हैं इन थैलों का कलर ब्लैक है और इस गोदाम के बाजू में गिट्टी पड़ी हुई नजर आ रही है।

इस फोटो पर हमें एक तालाब नजर आ रहा है जो कि बहुत ही सुंदर है।

इस पर बहुत सारे आदमी भी खड़े नज़र आ रहे हैं।

इस फोठो पर हमें एक बहोत बड़ी शंकर जी की मूर्ति नजर आ रही है।

जिस पर गणेश जी की और माता जी की फु मूर्ति रखी हुई है।

इस फोटो पर हमे एक मस्जिद नज़र आ रही है।